यह एक टॉकीज है टॉकीज मे बहुत सारे चेअर है और अ-बहुत कम लोग है और सब खड़े है और वो स्क्रीन पे एक इंडिया का झेंडा दिख रहा है।

एक बाजू मे आधा पोस्टर दिख रहा है और नीचे भी आधा पोस्टर दिख रहा है और आधा पेड़ दिख रहा है वन साइड --

यह एक बिल्डिंग है और उसके बाजू में रोड है और यह दो लड़कियां रोड क्रॉस कर रहे हैं और एक आदमी भी वो झेब्रा क्रॉसिंग से --

यह एक बड़ी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग पे एक बोर्ड लगा है नीले कलर का और नीचे तीन आदमी है बाते कर रहे--

यह दो पोस्टर लगे हैं और लाइट चालू है और पोस्टर के बाजू में एक सीधा रास्ता है।

फ्लेवर की पेस्ट्रीया दिख रहे है जैसे की चोकोलेट जैसे पायनापल केक अन एक्सेट्रा ।

यह एक डेकोरेट किया हुआ पिंजरा टाइप है और उसके अंदर तीन चेअर है।

यह एक बड़ासा किल्ले जैसा गेट दिख रहा है और ऐसा गार्डेन है और यहा बीच मे कुछ लोग ऐसे--

यह एक डेकोरेट किया हुआ है। वहा पे टेबल है चैअर लगे हुए है कुछ आर्टिफीसियल फ्लावर्स वो टेबल पे--

ये बिल्डिंग के ऊपर एक नीले कलर का बोर्ड लगा है और कूच पौधे हैं। बड़े बड़े झा--

यह एक गाडी है एक गाड़ी का चक्का निकला हुआ है और पीछे का चक्का है और उसे--

आदमी और औरत गाडी लेके है और उसके पीछे एक ट्रक दिख रहा है और ए रोडपे से कुछ बाइक भी जा रहा है।

यह एक गार्डन है और यहा पे आर्टिफ़िशियल कुछ अ प्राणी दिख रहे है।